यहां इस फोटो में एक आदमी नृत्य करता हुआ दिख रहा है।

बगल में आने जाने का रास्ता है।

पीछे लाइट जल रही हैं और यहां बहोत अंधेरा है।

आने जाने का रास्ता भी है।